यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन से खड़े है।

यहां पर छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं यहां पर एक महिला पौधे में पानी डाल रही हैं और पीछे की तरफ घर हैं बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और लाइटिंग का भी सिस्टम है| और यहां पर महिला एक पौधे में पानी डाल रही है।